उसके अंदर आइस क्रीम की फ्रिज रखी हुई है वहां पर आइस क्रीम है बहुत प्रकार की उसमे अंदर लाइट भी जल रही है कुछ पैकेट चिप्स के टंगे हुए है और सामने गाड़ी भी खड़ी हुई है ऊपर मकान--